अ मोटर साइकिल पे दो आदमी है साइकिल पे एक है।

ये एक विश्वकर्मा इलेक्ट्रॉनिक बस सिक्योरिटी सिस्टम की शॉप है।

यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सामान मिलता हैं यहाँ पर दो चेयर रखी हुई हैं एक वाटर कूलर भी हैं।

घोड़े है जुले है रेक्सी है एक एसा बोहोट सारा सामान रखा हुआ है।

रेड ब्लॅक कलर की बनियन पेहने हैं और ब्लॅक कलर का लोवर पेहने हुए हैं।

जहां पर अह जहां पर दो केवाड़े लगी हुए है ब्लू कलर की और उसमें हैंडल लगे हुए हैं।

सिमेंटट घर बना हुआ हे ऊपर एक--

और अः इस पे ग्रीन कलर की गोल्डन कलर की डेकोरेशन है।

यहां पर एक आदमी चेयर पे बैठा हुआ है कुछ टायर दिखाई दे रहे हैं।

और इसमें डेकोरेशन हो रही है लाइटिंग से लाइटिंग से डेकोरेशन हो रही है रंगीन फ्लावर पॉट रखे हुए हैं टेबल के ऊपर।

ये एक शॉप है शॉप में अंकल है डेरी मिल्क किटकैट और सिल्क काफी सारे --

यहाँ एक प्ले ग्राउंड में बहुत सारे झूले है झूले पर अ बहुतसारे बच्चे भी है और दूसरी साईड में --

और पेंट ग्रे कलर की पेंट पहना हुआ है उसके हाथ में कलावा और एक अ बेंड सा लग रहा है।

और साइड में बहोत अ पथर वगेरा भी हे।

ये एक फूलमाला की दूकान है यहाँ रंग बिरंगी मालाये लटकी हुई है ये एक वाइट कलर की रेड कलर की --

और काउंटर के ऊपर लॉलीपॉप एक डिब्बे में अ में और रस्क का पैकेट और बिस्कुट का पैकेट है।

ये एक सेंटर है।

यहाँ पक्कों अ चाय और कॉफी मिलती है यहाँ पर दो लोग --

दो लोग है दूकान के पास और एक पटेल टैलर्स का --